जीन्स पहनी हुई है। पैर में जूते पहने हुए है।

आसमान दिखाई दे रहा है।

बेंच नज़र आ रहे हैं। डस्टबिन दिखाई दे रहे हैं।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

पंखे नजर आ रहे हैं। दीवार दिख रही है।

स्कूटर दिख रहा है। मोटरसाइकिल दिख रही है। आसमान दिख रहा है। कुछ लोग दिख रहें हैं।

इस इमेज में हमें कुछ छात्राएं नजर आ रही हैं।